भैया इसको क्या बोलते नहीं समझ में नहीं मालूम।

कुछ टे कुर्शियां भी रखी हुई है उसके अंदर कुछ ने--

दिखाई दे रहा है नीचे कुछ आदमी एक मोटरसाइकिल ।

यहां मुझे एक स्कूल नजर आ रहा है जहां पर परेड चल रही है अ प्रार्थना चल रही है जहां सभी लड़का और लड़कियों की--

और वहां पे बिल्डिंग का जो कलर है स्कूल की बिल्डिंग का वो सफेद कलर से वहां पे मुझे बहुत सारी खिड़की नजर आ रही --

यहां मुझे एक बड़ा सा पंडाल दिखाई दे रहा है जहां पे नीचे एक हरे कलर का फर्स बिछा हुआ है उसे--

पूरे खिड़की में लगाया गया है उसको सझाया गया है चेयर भी नजर आ रही है जो कि--

यहां एक हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर पिलंबर लगा हुआ है नीचे टायर्स का भी बहुत साफ सुथरा .]

दिखाई दे रही है ऐसे सरकारी कुछ अ ऑफिस .

लाइटों को भी बहुत अच्छी तरीके से लगाया गया है।

ऐसे पर्दे लगे हुए रहते हैं स सब अलग-अलग तरीके से--

के पर्दे मुझे दिखाई दे रहे हैं एक लाल कलर का एक--

एक परोस रही है कुछ खड़ी हुई हैं ऐसा लग रहा से शायद स्कूल के बच्चे--

फोटो या रिल्स वगैरह बना रहा है यहां पर एक टेबल पर कुछ एक फ्लावर भी .]

यहां एक बहुत बड़ा सा हॉल टाइप का दिखाई दे रहा है जहां पर एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है एक बड़ी सी गाड़ी अंदर खड़ी हुई है।

उस जाली के अंदर की साइड में मुझे कुछ पेड़ पौधों की टहनियां कुछ--

बिची हुई जो कि सफेद कलर से है और उस पे सफेद कलर का उस पर तखियों पे भी लगाया गया है ओढ़ने के लिए पर्पल कलर की --

बेडशीट रखी हुई है और उसके बगल से कुछ मुझे अलमारी दिखाई दे रही है जो कि --

मेरून कलर की है और इसका जो दीवार है एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा है इस दीवाल पर मुझे--